जैसा कि मैं देख पा रही हूं मेरे सामने मिल है वहां पर काफी लोग आए हुए हैं काफी अच्छी-अच्छी जॉब्स की गई ।

जैसा कि मैं देख पा रहे हैं यहां पर इंडियन ऑयल का कंपनी द्वारा संचालित प दिया गया है।

जैसा कि मैं देख पा रही हूं कि एक रेस्टोरेंट है बहुत ही सुंदर रेस्टोरेंट लग रहा है सी लगा हुआ है पीछे थोड़ा क्रीनरी व्यू दिया गया है।

एक फैमिली यहां बच्चों के साथ बैठी हुई है एक आदमी यहां से जा रहा है।

बहुत ही प्यारे सुंदर सुंदर पौधे दिए गए हैं छोटे से पौधे दिए गए हैं जो अपने घर को सजाने के लिए बहुत काम आते हैं।

बहुत सारी गाड़िया खड़ी हैशायद ये एक हॉस्पिटल का है।

कुछ लिखा हुआ है पेड़ पौधे लगे हुए हैं रोड्स काफी साफ है फ्लावर गिरे हुए हैं।